ए बड़ा वाला एक टावर है टावर के पास एक तार है तार में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए कलर कलर के फूल हैं और एक लोहे का कंपाउंड है और बड़ा नीला आसमान है।

यहाँ पे एक पुराना मंदिर है मंदिर में बहुत सारी रंगो रंग की मूर्तियाँ हैं एक लाइट दिख रहा है और दरवाजे के अंदर जाते हुए आदमी लोग दिख रहे हैं और बड़ा ऊपर में आसमान दिख--